यहां पे एक मैदान है।

ये एक चाय का कप है।

बिल्डिंग के आसपास कुछ लोग खड़े हैं ।

बिल्डिंग के सामने एक मूर्ति लगी हुई है।

सड़क साफ सुथरा है सड़क के सामने गाड़ियां है।

सड़क के सामने एक पर्वत है पर्वत बहुत ऊंची है ।

यह एक जिम है।

में बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं।

सड़क पे बहुत सारे लोग हैं।

पंडाल बहुत अच्छा बना हुआ है।

इस कमरे में दरवाजे लगे हुए हैं।

दरवाजे बहुत अच्छे अच्छे हैं।

यह छठ मां का पूजा हो रहा है घाट में।

कपड़े बहुत अच्छे-अच्छे हैं यहां पे शर्ट बहुत अच्छे-अच्छे रखे हुए हैं।

यहां पे एक पंडाल है।

इस पंडाल में एक मूर्ति है।

पंडाल में पंखा लगा हुआ है।

दीवार पे केले के पत्ते से सजाया गया है।

द्वार पे एक बाइक खड़ी हुई है।

कमरा एकदम साफ़ सुथरा है।

ऊपर मार्केट के बगल में एक होटल है।

एक आदमी इस बेड पर सोए हुए हैं।

इसलिए पैर एक उठा रखा है।

ऑफिस में पर्दे भी हैं लगे।

यहां पे एक बिल्डिंग है।

जींस बहुत अच्छी अच्छी है।

लाइब्रेरी बहुत साफ सुथरी एवं सुंदर दिखने में है।

इस शॉप में एल_ई_डी बल्ब भी मिलता है ।

कमरा एकदम साफ सुथरा है।